यहाँ पर एक सड़क है। सड़क पर बहुत सारे लोग खड़े हुए। सड़क पर दो सफ़ेद कलर की कारे भी है।